आठ चारो और हरियाली हरियाली दिखे हरियाली ओर पानी पानी ओर जो वातावरण हे बेजा ही मनमोहक लाग रहियो है।

जिया थे लोग देख सको दो इंसान दो मीनख कारीगर को काम कर रहा है बे हाथ म हथोड़ो पकड़ रखो है।

अंदर के बॉयज सारा बच्चा अपना अलग अलग लगये हुए है एक टेबल जो को ऊपर कागज का है कागज की चीज बना रहे है। काफी चीज़े बनायेड़ी है।

सारा बच्चा अपना अलग-अलग बना रह है ताकि ठा रहव की या चीज़ा यो बच्चो बणायो है दूसरी चीज़ा कोई और बणायो बा के नाम के सागे--

इस में साफ साफ दिख रहा है के बच्चे लोग विकास की प्रकार की तरीके हु हो रहो है और ये बच्चा किती ज्यादा नई चीज बना रहा है।

एक जो मैडम बट्ट खड़ी है वा बच्चा पर निगरानी रख रही है बच्चा न बताव की काठ काय करना है तो बच्चा भी खुश हो बे चीजा बना राय है।

इ तस्वीर म एया जाने कोई छोरी है कोई फंक्शन म--

सामने जो आसमान है बहुत सुन्दर लाग रहियो है एक दम निलो हो रखियो है एया लागे बठे अच्छी हवा और जो पहाड़ अभी भी हरा भरा है।

और हरा रंग का दरवाजा आसपास हरियाली भी हैऔर चारो मेर एया लाग रो जेया काम चल रो है फैक्ट्री आरो--

चारो और मिटी मिटी है अथे घाना पेड़ भी है जो हरे है और उन इ देखन लगे अथे घनी धुप है जो तस्वीर बीके अंदर छाया है।